यहाँ पास बहोत सारे पेड़ है और भी है और तलाब है तालाब का पानी बहोत अच्छा दिख रहें है मौसम भी मस्त है आप सभी देख सकते हो मस्त जगह है घुमने फिरने का--

ये जगह मछली का मार्केट है और क्या बोलते हैं इस मछली का नाम तक मैं नही जानती हूँ बहुत मस्त दिख रही हैं और छत्ता- छत्ता भी है यहाँ पास खुला नही है छत्ता और क्या बोलते है है ग्रीनरी है बहुत अ--